काफी सुंदर लग रहा है डेकोरेशन यहां का।

यहां पे एक रेड कलर का पोस्टर लगा हुआ है डिजिटल लाइब्रेरी ।

यह एक पूजनीय मंदिर है जहां कि बहुत सारे आदमी गए हैं दर्सन के लिए।

बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं अपने सर पे रुमाल बांधके।

साथ में ही हाथ में एक झोला भी रखा है।

ये सारे कबूतर वहां पे हैं व्हाइट में ब्लैक में।

मिल के पास आदमी खड़ा हुआ है।

यहां सदर अस्पताल है जोकि सदर अस्पताल के नीचे एक वाइट कलर का कार्ड लगा हुआ है।

ताथ ही तीन बक्ति यहां पे बैठे हुए हैं।

यह एक दुकान है जहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर का माउस बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

यह एक होटल है जहां की रेड कलर का कुर्सी लगा हुआ है।

ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ है जीन्स पहना हुआ है।

यह एक पार्क है जहा की बहुत सारे बच्चे खेल रहे है मस्ती कर रहे हैं।

पास में एक ब बच्चा है जोकि ब्लैक कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना हुआ है।

दुकान के आगे पोस्टर में लिखा हुआ है आकाश जनरल स्टोर ।

दो बच्चा बैठा हुआ है जो कि एक पीले कलर का टी शर्ट और मुंडी में ब्लैक कलर का टोपी पहना हुआ है।

देखने में काफी सा सुंदर लगे हैं देखने बाहर से।

बगल में एक रेड कलर का साइकिल भी लगा हुआ है।

बगल में उसके घड़ी है।

यहां पे ग्रिल लगा हुआ है यहां कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

अंदर में दो व्यक्ति खड़ा हुआ है।